इधर भी शादी हो रहा है। जहाँ पर स्टेज सजा हुआ है नाच गाना का स्टेज है आदमी लोग बैठे हुए हैं इधर-उधर लड़की सब खड़ा है सब तरफ नाच गाना हो रहा है लाल सम बैठी है चुनरी टंगा हुआ है। कपड़ा सब सजेरा हुआ है। रात का सीन है। सब आदमी लोग अप्पन बैठे हुए हैं।

दोकान है जहाँ पर अंडा का दुकान है साइड में होटल भी है इ होटल मे चौमिन --